कुछ लोग सीधे घास ऊपर से बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग बगैर जहाँ वहाँ घास नहीं वहाँ खड़े दिखाई दे रहे है और कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है।

किसी खेत का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहोत एक ज़ाम दिखाई दे रहा है जो लकड़ी पे टंगता हुआ दिख रहा है एक व्यक्ति ने हाथ में पकड़ा हुआ दिख रहा है पीछे कुछ पेड़ पौधे-पौधे दिखाई दे रहे है काली पन्नी में मिट्टी भरे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

नीचे कुछ रॉड और कुछ प्लेटे और कुछ डंबल्स पड़े हुए दिखाई दे रहे है नीचे का सीट ब्लैक कलर की दिख रही है साइड से एक खिड़की दिखाई दे रही है दीवार का कलर कुछ --

ऑफिस या किसी मेडिकल शॉप का फोटो दिखाई दे रहा है साइड में भी एक दरवाजे लगे हुए दिख रहे है जो कांच के दरवाजे बने दिख रहे है शटर दिखाई दे रहे जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है पास में एक शॉप दिख रही है जिसके पास काउंटर बना है जिसमें--

दीजाली जैसा कुछ डिज़ाइन बनाई गई दिख रही है पीछे मंदिर के कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर गुम्मद है दिख रहे वैसे लम्बे से दिखाई दे रहे है और पीछे आसमान में कुछ बादल दिखाई दे रहे है।